यह एक चर्च है यह चर्च बहुत ही सुंदर है इस चर्च में बहुत सरे लाइटें लगी हुई हैं ।

ई बहुत ही प्यारा केक है इसके ऊपर कई सारे चोकलेट और बिस्किट भी लगे हुए हुए है ये ब्राउन कलर का केक है ये बहुत ही प्यारा केक है।

ये एक गार्डन है यह छोटा गार्डन है इसके चारों तरफ हरियाली है बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि खेल रहें हैं चारों तरफ ग्रा उ पीले का ग्राउंड बना हुआ है।

इसमें झूले लगे हुए है बच्चे झूले के आनंद ले रहे हैं सब खेल रहे हैं |